वाह भाई ये तो ए_टी_एम है यार और भारतीय डाक पोस्ट भी है यार इंडिया पोस्ट और ये चौबीस घंटे उपलब्ध है यार ये एटीएम तो।

बढियां पत्थर है यार। यहाँ पे बैठने में भी देखो लोग वाग आते हैं।

काफी सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं इस तलाव के अंदर --

और कितना बड़ा स्विमिंगपूल है इसका पानी भी कितना क्लीन है।

और देखो ये देखो ये जो छतरी लगाने की है। पानी के अंदर ये कितनी अच्छी लग रही है पीले कलर की और ये रपटनी भी काफी अच्छी है।

जो कि ये काफी अच्छा है और इसकी लिफ्ट इतनी अच्छी है पहली वाली लिफ्ट लगी हुई है आने के लिए जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहां पे --

भाई ये तो यार कंकाल है।

जो कि काफी भीड़ है और काफी अ बड़ा ग्राउंड है ये।

ये एक गांव है और यहां पूजा हो रही है।

बहुत बढ़िया वो देती हैं एवरेज --

लगता है आज इस मंडप में शादी वगैरह दिखा है।

थोडा एयरटेल का नेटवर्क और वोडा का नेटवर्क बोहोत अच्छा है।

देखो ये नीले कलर का जो ये प्रेशर वाला रखा है।

जोकि काफी खूबसूरत लगता है ये।